एक एंट्रेंस का गेट कांच का बना हुआ है कुछ ताल देख है।

देखो इधर वाइट कलर का और पीछे का जो दीवार है वो गुलाबी कलर का पीछे का दरवाजा है देख सकते हैं --

एक बना देख पा रहे हैं इन में से ब्लू साईन का लिखा हुआ है और बहुत सारा--

और एक व्यक्ति को देखो प्लेयर ब्लैक कलर का स गंजी पहने हुए ब्लैक कलर --

तो रेड में लिखा हुआ है क ब्लू में लिखा हुआ है सामने उसका बहुत सारा हम--

और दवाल का रंग हम लोग ब्राउन देख पा रहे हैं और--

इस फोटो के अंदर हम लोग एक फंक्शन जैसा कुछ देख पा रहे हैं।

इस फोटो के अंदर हम लोग रोड देख पा रहे हैं इसके साइड में हम लोग कुछ ब्रिक्स देख पा रहे हैं जो कि--

स्कूटी चलाते हुए जाते देख पा रही है एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए है स्कूटी तो व्हाइट कलर का है।

ब्लैक कलर का कुछ हम लोग लैंप पोस्ट देख पा रहे हैं कि--

एक लाल बॉक्स बना हुआ है इसका ऊपर हम लोग एक बैनर देख पा रहे--

पीछे में एक बड़ा सा पेड़ देख पा रहे है इसके ऊपर हम फैंस देख पा रहे हैं जो लोहे बना हुआ है।

पीला कलर का है कुछ ब्लैक कलर का है हम टेबल देख पा रहे है जो कि--

ब्लैक कलर का एक व्यक्ति को देख पाएंगे कि ब्लैक और व्हाइट चेक शर्ट चेक गंजी पहना हुआ है एक ब्लू कलर का--

इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है पीछे में हम लोग को दो नाव दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो के अंदर हमें कॉस्मेटिक का दुकान दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का हमें यहाँ पर बास्केट दिखाई दे रहा है जिसका अंडर कुछ हमें दिखाई दे रहा है पीछे में हमें--

और कुछ नेल पॉलिश दिखाई दे रही पीला कलर के रेड कलर के।

ऊपर लिखा हुआ है दाल किराना स्टोर एक व्यक्ति का चित्र भी बनाया हुआ है।

एक नमक का डिब्बा दिखाई दे रहा जोकि ब्लू कलर का है तीन चार वो व्यक्ति देख पा रहे हैं जिसने एक--

ऊपरा पर कुछ ए_सी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे जो वार्ड का कपड़ा पहने हुआ--

इलेक्ट्रिक पोल देख पा रहे है तीन --

एक ब्लू कलर का मास्क है यहाँ पर एक थेला दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारा सफे--

और देखो पुलिस दिखाई दे रही है जोकि खाकी कलर के कपड़े पहने हुए है।

एक दो इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा ब्लू कलर का।

इस फोटो में सामने हमें एक रोड दिखाई दे रहे हैं। दो कार दिखाई दे रही है। उनमें से एक का कलर व्हाइट एक का कलर --

लाइफ बॉय कंपनी का एक हमें कुछ कप दिखाई दे जोकि लाल कलर का--

डीवाल का रंग हल्का यलो कलर सीलिंग का कलर व्हाईट एक फर्नीच का फ्लोर जो है--

सामने में एक हम दुकान देख पा रहे हैं इसके ऊपर में एक बोर्ड लिखा हुआ--

पर चार व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिसमें एक ने ब्लू कलर का--

इस फोटो का अंदर हम एक दुकान देख पा रहे है इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

इसमें लिखा हुआ राना डिपार्टमेंट स्टोर रेड कलर में साइड में एक डेरी मिल--

नाला देख पा रहे हैं जोकि सुख गए हैं --

ग्रीन कलर के कुछ डायमंड कंपनी का पैकेट देख पा रहे--